आसमान बादल दिखाई दे रहा है छोटे-छोटे पत्थर दिखाई दे रहे हैं इसमें हरा-भरा पेड़ दिखाई दे रहा है इसमें हरे-हरे --

कुछ करते हुए दिखाई दे रहे प्रैक्टिकल्स में मैडम दिखाई दे रही जिसमें सफ़ेद कलर की --

सारी पिक्चर दिखाई दे रही जिसका कलर ग भ भटाई दिखाई दे रहा हरा।

इसपे एक मैदान दिखाई दे रहा है जिस पे हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहा है इसमें हरे-हरे पत्ते दिखाई दे रहे इसमें सफेद --

इस पे एक मैदान दिखाई दे रहा है जिसपे हरा-भरा पेड़ दिखाई दे रहा है इसपे हरे-हरे पत्ते दिखाई दे रहे हैं इसमें सामाजिक --

इस पे एक स्टेशन दिखाई दे रहा है जिस पर बहुत सारे ट्रेने खड़ी दिखाई दे रहे हैं ट्रेने का कलर काला दिखाई दे रहा है इसमें --

पेड़ दिखाई दे रहा है इसपे सफ़ेद और आसमानी कलर का आसमान बादल दिखाई दे रहा है इसमें एक --